एक साइकिल लगा के उम खड़ा है और ये चार अअ यहाँ पे ए_सी लगे हुए हैं और ग्रिल भी --

दो चार छह कार खरी है और एक स्कार्पियो है दो --

बच्चे पढ़ने जाते है और काफी साफ सुथरा रखा गया स्कूल को और काफी--

ये पल्सर बाइक है जोकि इसका नंबर है टेन सेवन --

इन ट्वेंटी फाइव और जो और यहां पैनल में काफी सारे कुछ लिखे गए हैं महिला स्वरूप।

म्म खड़ा हो करके फोटो ले रहा है ताकि हम सम सबमिट कर सकें कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं आज आज का हाजिरी तारीक --

अब यहाँ पे स्टैंड का टॉनिक है जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में और यहाँ --

यहाँ पे एक मूर्ति अ रखा हुआ मूर्ति के नीचे अ बहुत सारे आदमी खड़े हैं और ये घूमने गए हैं ।

डांस कर रही और ये काफी अच्छा लग रहा है और देखने में मजा आ--

काफी दूरी तक कोई ना आदमी नजर नहीं आ रहा है और ये काफी अद्भुत नजारा है और इसमें बहोत स --

पानी भी है बहोत हरियाली है और यहां पे हरे भरे पेड़ पौधे है और जंगल है यहां--

खिड़की भी है एक एगो रोशनदान भी है।

ये एक मंदिर है और ये काफी सुंदर है और काफी हरयाली लग रही है और ये नदी है जो काफी बड़ा लग रहा --

ये काफी अच्छा दिख रहा है देखने में अम्म में ऊपर पहाड़ भी है और ये पहाड़ बहुत ही अच्छा लग रहा है।

अर जे तार भी गया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का जो कि हम लोग का लाइन सप्लाई करता है और एक यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है और ये काफी अच्छा नज़ारा देखने --

एक टेबल फैन भी लगा हुआ है जो ऊपर लगा हुआ है वाइट कलर का और ये वाइट कलर का पंखा भी है और --

यहाँ पे एवं एक मकान है जो अम पीले रेड कलर का ए पेंट किया गया है और ये स्टेशन लग रहा है और यहाँ --